सामने की ओर भीम छोटा भीम का चित्र बना हुआ है जो की नांव में चलते हुए है।

रेको के बीच में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साड़ियां रखी हुई है।

और सामने की और एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

जो कि टावर लगाने का काम कर रहे हैं एंगल लोहे के उठा उठा के ऊपर की ओर लगाते हुए दिखाई दे रही है।

ऊपर की ओर बहोत सारे बादल ही बादल दिख रहे है।

उसके अंदर दो कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें दो ए_सी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है। मॉल में बहुत सारी रैके टाइप की बनी हुई है।

यहां पर एक लड़का अपनी बॉडी दिखाते हुए दिखाई दे रहा है।

और इसने लाल कलर की एक हुडी टाइप की पहनी हुई है और एक जींस पहनी हुई है।

पीछे बहुत सारी जिम की मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां एक परचूनी की दुकान दिखाई दे रही है जिसके पीछे की साइड मैगी मसाले टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और भी जो एक जार लगा हुआ है जार के ऊपर एक कटोरी रखी हुई भी दिखाई दे रही है।

यहां एक बाजार की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां एक डेम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

और नीले कलर साइड में एक छोटा सा पुल बना हुआ है।

इसके ऊपर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बहोत बड़ी सी क्ले क्रेन मशीन दिख रही है।

जिसमें एक आगे की ओर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है।

यहां एक मंदिर के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

मंदिर के अंदर की ओर एक लेडिस जाते हुए दिख रही है।

मंदिर के गेट के बाहर की ओर एक घंटा लगा हुआ भी दिख रहा है।

मंदिर के बाहर दो बाईकें भी खड़ी हुई दिख रही हैं।

घर के आगे की ओर रखे हुए दिख रहे हैं नीले रंग के।

राज नंदिनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिखा हुआ है।

और जिसके अंदर जाने का रास्ता है गुफा टाइप की बनी हुई है।

और एक स्टूल के ऊपर में जग रखा हुआ पानी पीने के लिए।

उनके पास एक थर्माकोल का सफेद रंग का डब्बा भी रखा हुआ है।

और सामने की ओर एक मेज और तीन चेयर रखी गई है।

और पूरा डेकोरेशन लाल लाइट में करा गया है।

और सनसेट होते हुए भी दिखाई दे रहा है।

नदी के बगल में एक सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारे लोग छठ माता की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे की ओर एक बहुत बड़ा सा खेत भी दिखाई दे रहा है।

और एक सेट अप बॉक्स भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बीच बीच में पंच छ फुव्वारे भी बनाए गए हैं।

जिसके आगे की ओर दो तीन बाईके खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और उसके ऊपर पिंक कलर के फूल के डिजाइन बने हुए हैं।

की फोटो बनी हुई है और लिखा है वेलकम टू --